इस फ़ोटो में एक बाजार दिखाई दे रहा है जहाँ तरह-तरह के माँस और मछलियाँ बेची जा रही। एक महिला यहाँ पर बैठी हुई है।

जो काली रंग की है कुछ लोग यहां व्यायाम कर रहे है ऊपर कुछ एल.ई.डी. लाइट्स लगे हुए है एक घड़ी यहाँ दिखाई दे रही है ए.सी. यहां लगा हुआ है।

इस फोटो में एक मकान बन रहा है| कारीगर अपना काम कर रहे हैं| बहोत सारी ईंटे यहाँ पर रखी गई है लाल रंग की कुछ कुर्सियां यहाँ पर लगाई गई है एक रस्सी भी दिखाई दे रही है।

इस फ़ोटो में बहुत सारे बच्चे नीचे बैठे हुए हैं जो अध्यन कर रहे। एक शिक्षक कुर्सी पर बैठा हुआ है।

कुछ बालिका यहाँ नृत्य कर रही है | नीचे हरे रंग की दरी बिछाई गई है।